ये एक तस्वीर शर्मा हॉस्पिटल की है जिसका काफी बड़ा बोर्ड लगा है।

ये तस्वीर एक हाईएक्स क्लास सेंटर की है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां पॅ अपने कॉपी पेन पे कुछ लिख रहे हैं।

जिसपे काफी चेयर्स लगी हुई है अ ब्लू कलर की लाइट भी शाइन कर रही है।

ये तस्वीर होटल के रिसेप्शन रूम की है जहां पीछे बोर्ड लगा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट --

खाने का समान है रसगुल्ला है कुछ चमचे पड़े कुछ सॉस के पाउच पड़े हुए हैं।

और नदी भी काफी साफ सुथरी लग रही है दूसरी तरफ भी एक पुल बना हुआ है।

छोटा पौल पोल एक पे छोटा पौधा भी लगा हुआ है काफी बड़ा पेड़ भी लगे हैं जिसकी पत्तियां भी नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर एक शोरूम की है जिसमें अलग अलग फूलों से गुलदस्ते पड़े हुए है कुछ फ्लो--

पौधों के गमले रखे गए हैं लाइन में और कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं इसको देखते हुए।

ये तस्वीर एक रात के समय की है जिसकी काफी बड़ी ग्राउंड है और--

और दूर दूर तक काफी लाइट्स जग रही है बीच में एक बड़ा खंबा भी है।

जिसमें काफी लाइट्स जग रही है कुछ रहे हैं कुछ को अलग अलग तरह के कपड़े पेहनाये हुए हैं।

वे जहां काफी मछलियों पर पकड़ी हुई है और कुछ लेडिस जेंट्स चलते फिरते नजर आ रहे हैं काफी भीड़ है अलग तरह कपड़े पहने हुए हैं।

और एक रिसाॅल में काफी कागज और सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं।

एक सफेद रंग का है ब्लू रंग का है ब्लैक कलर का है ये से पेंट किया गया है डिजाइन बने--

साइट पे छोटे छोटे फूलों प फूलों के गुलदस्ते पड़े हुए हैं कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं।